पीला लाल कलर का बैलून भी है।

दुकान के अंदर बहुत सारे मेकअप का समान है।

पानी भी गिर रही है बहुत बड़े बड़े चट्टान भी दिखाई दे रही है।

गेट के बाहर एक जेन्स खड़े हैं उनके पास एक गाड़ी भी है।

बहुत बड़े मकान भी है जो कि मकान का कलर पीला कलर का है।

के बाहर एक दरवाजे दिखाई दे रही है जो की दरवाजा का कलर ब्लू कलर का है और उस दरवाजे से रोशनी भी आ रही है।

एक बड़ा सा डब्बा भी रखा हुआ है डब और अगल बगल बहुत सारे डब्बे रखे हुए हैं।

छात धोने वाला सामान भी है।

नीला नीला खत बनाया हुआ है।

लाल कलर का कपड़ा भी टंगा हुआ है ब्लू कलर का कपड़ा भी टंगा हुआ है।

इस चित्र में एक जेंट्स खड़े हैं जो की जेंट्स बच्चे को लेकर गोद में खड़े हैं और उस बच्चे का जन्मदिन मना रहे हैं।

बहुत सारे बैलून से सजाया हुआ है बैलून का कलर व्हाइट और पीला कलर का है।

पीला लाल फूल से सजाया हुआ है नीचे लाल चटाई जीठाया हुआ है हरा भी जीठाया हुआ है।

बहुत सारे डब्बे भी रखे हुए है और खाने पीने वाला दवा भी रखे हुए--

तीन गेट दरवाजा दिखाई दे रहे हैं जो की दरवाजा खुला है दरवाजे के अंदर खाने पीने वाला सामान रखी हुई है।

मशीन भी कपड़ा सिलने वाला रखा हुआ है।

बहुत सारे डब्बे में कुछ सामान रखे हुए हैं जो कि कुछ डब्बे का कलर पीला है कुछ डब्बे का कलर लाल है।

दो तीन गेट भी अम दरवाजा भी दिखाई दे रही है।

अगल बगल बहुत सारे पेड़ पौधे भी है जो कि पेड़ नारियल का है।

ऊपर में बादल भी दिखाई दे रही है।

इस चित्र में बहुत सारे पंखा रखा हुआ है पंखा के उधर एक बाइक भी लगी हुई है।

इस तस्वीर में एक बड़ा सा घर है और घर पीला व्हाइट कलर से पेंट किया गया है बहुत सारे बैलून भी है।